एक तरफ एक मछली बनाया हुआ --

गिट्टी बालू डाला हुआ है।

यहाँ पे एल.ई.डी. टी.वी. लगा हुआ है। ऊपर सेटअप बॉक्स रखा है। इधर बेड रखा है। बोहोत छोटा ही घर है लेकिन बोहोत ही अच्छे से इसको मैनेजमेंट किया हुआ है।

एने स्टेचू है बड़ा-सा घर है।